वाइट कलर का पेंट किया हुआ दिख रहा है छत दिख रही है छत पे लाइट दिख रही है और पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है।

बहोत सारे लोग दिख रहे है एक ठेलिया दिख रहा है और ऑटो रिक्शा दिख रहा है ।

रेलिंग लगी हुई दिख रही है पेड़ - पौधे दिख र--

दिवार दिख रही है ग्रे कलर का बहुत त बड़ा पोस्टर चिपका हुआ है यहाँ पे और बल्ब जल रही है।

एक ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड पे बहोत सारे लोग खड़े हुए एक लड़का पास में खड़ा है ब्लैक कलर का टी-शर्ट पेहना हुआ है।

और बोहोत सारी कलरफुल लाइट लगी हुई दिख रही है खम्बे दिख रहे है और--

गमला रखा हुआ है और उसमे पौधे लगे हुए दिख रहे है ऊपर--

सामने दिवार दिख रही है ब्लैक कलर की और पिंक कलर की और सामने बिल्डिंग दिख रही है।